एक आदमी एक औरत बैठे हैं।

सफेद रंग का ड्रेस पहनी है।

अंदर एक लड़का और एक आदमी खड़े हुए--

नीचे एक्सीडेंट एन्ड इमरजेंसी लिखा हुआ है।

ब्रिज पर कुछ तार है।

एक आदमी बेग टांगा है काले रंग का--

इस चित्र में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है।

और कुछ पेड़ हैं एक बिजली का खंभा हैं।

कमरे पे के अंदर एक बोर्ड लगा है उस पर--

चित्र में हमें एक घर नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक एयरपोर्ट नजर आ रहा है।

घर के अंदर दो काले रंग की कुर्सियां लगी हुई हैं।

पेट्रोल पंप के बाहर नो पार्किंग लिखा हुआ है।

ग्राउंड के सामने बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं।

सड़क के साइड में बहुत सारे फूल हैं।

चित्र में हमें तीन बिल्डिंग नजर आ रहे है।

काले रंग डिब्बो में ज्वेलरी रखी है।

बिल्डिंग के सामने दो घर है इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

शॉप के बाहर लाल रंग के पॉट पर टॉप इन टाउन लिखा है।

कुछ सफेद रंग के कपड़े पहने हैं और कुछ काले रंग के--

टेबल के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर के ऊपर स्पायर लाइब्रेरी लिखा हुआ है एक घड़ी है।

इस चित्र में हमें एक कमरा नजर आ रहा है।

और कथई रंग के पर्दे हैं।